पेंट कट्स ढेर सारा डब्बा रखा हुआ है बर्जर का उम्म स्काई कलर ब्लू कलर ।

और एक आदमी मछली काट रहा है।

नवरत्न तेल है रेड कलर का कपड़ा है झोला रखा हुआ है व्हाइट पेपर है।

स्कूटी भी है बाहर में लोग फोन युज --

मंदिर है। मंदिर में बहोत डेकोरेशन है येलो कलर है।

दुकान है ऊपर टीना है तार है।

दुकान है दुकान में कुर्सी है टेबुल हैं लैपटॉप हैं।

रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट में बहुत सारा आदमी है।

हॉस्पिटल है कॉलेज है राजकीय पॉलिटेक्निक कटिहार।

बगल में ट्रांसफर्मा है ट्रांसफर्मा में जला हुआ है काला-काला तार है।